जैसे ऊपर की ये पानी नीचे मार रहे हैं।

बहुत सारे पेड़-पौधे दिखाई देते हैं।

बहुत सारा भाई ए.टी.एम्. के बाहर खड़े है ।

चार मंजिला रेस्टोरेंट है।

यह रेस्टोरेंट में खाना की भी सुविधा है।

यहाँ बहुत बड़ी-बड़ी मछ्ली दिखाई देते हैं।

बगल में एक दो दूकान भी हैं।

यहाँ बहुत सारे टोटो लगे हुए हैं।

इस स्कूल में बी.डी.डब्लू. रेड स्कूल लिखे गए हैं।

कुछ लेडीजे हैं। बू बुरखा पहनी हुई है।